c और c ++ में logical operators logical operators पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम logical operators जैसेlogical and जैसे expression1 && expression2 के बारे में सीखेंगे
logical or जैसे expression1 or expression2
logical not जैसे not expression1
हम उदाहरण की मदद से यह करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ operating system के रूप में उबंटू 1110
उबंटू पर gcc और g ++ compiler वर्ज़न 461
logical operators के परिचय के साथ हम शुरू करते हैं
c और c ++ में true 0 के अलावा कोई भी any value है
non zero का मतलब true है
zero का मतलब false है
logical operators का उपयोग कर expressions true के लिए 1 और false के लिए 0 दर्शाता है
अब मैं एक उदाहरण की मदद से logical operators समझाऊँगा
यहाँ c में logical operators के लिए एक program है
main block के अंदर
यह statement a b और c variables को इंटीजर के रूप में दर्शाता है
printf statement यूजर को a b और c की values को दर्ज करने के लिए संकेत करता है
scanf statement यूजर से variables a b और c के लिए input लेता है
यहाँ सबसे बड़ी values खोजने के लिए हम a की values की तुलना b और c से कर रहे हैं
एक साथ तुलना करने के लिए हम logical and operator का उपयोग करते हैं
यहाँ true value return करने के लिए logical and की सभी conditions true होनी चाहिए
false condition का सामना करने पर आगे के expression का मूल्यांकन नहीं किया जाता
अतः expression a> c तो ही का मूल्यांकित होता है यदि a> b true है
यदि a b से कम है तो expression का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा
यदि पिछली condition true है तो इस statement का मूल्यांकन किया जाता है
आगे b> c मूल्यांकित है
यदि condition true है तो screen पर b is greatest प्रदर्शित होता है
अन्यथा screen पर c is greatest प्रदर्शित होता है
अब हम logical or operator पर we हैं
यहाँ true value return करने के लिए logical or के लिए कोई एक conditions true होगी
true condition का सामना करने पर expression का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाता है
अतः यदि a == zero है तो बाकी दो expression का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा
यदि a b या c जीरो है तो यह printf statement निष्पादित होती है
program के अंत में आते हैं return 0 और ending curly bracket
अब program को सेव करें
extension c के साथ सेव करें
मैंने अपनी फ़ाइल logical c नाम से सेव की है
ctrl alt और t कीज़ एक साथ दबाकर terminal खोलें
code को compile करने के लिए type करें gcc space logical dot c space minus o space log enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें /log
enter दबाएँ
मैं यह values दर्ज करूँगा
output प्रदर्शित होता है
c is greatest
the product of a b and c is zero
आपको inputs के भिन्न sets के साथ इस program को निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए
अब वही program c ++ में लिखते हैं
मैंने पहले ही program बनाया है और मैं आपको बताता हूँ
यहाँ c ++ में code है
अब वही program c ++ में बनाने के लिए हम कुछ बदलाव करते हैं
यहाँ header file में बदलाव है
using statement इस्तेमाल की गयी है
और यहाँ output और input statements में एक अंतर भी है
operators वैसे ही काम करते हैं जैसे वे c में करते हैं
save पर click करें
सुनिश्चित करें कि file extension cpp के साथ सेव की है
ctrl alt और t कीज़ एक साथ दबाकर terminal खोलें
program compile करने के लिए type करें g ++ logical cpp space minus o space log1 enter दबाएँ
निष्पादन करने के लिए type करें/log1
enter दबाएँ
मैं यह values दर्ज करूँगा
अतः हम c program के समान output देखते हैं
आपको inputs के भिन्न sets के साथ program को एक्जीक्यूट करने का प्रयास करना चाहिए
अब हम एक error देखते हैं जो आ सकती है
editor पर जाएँ
मान लीजिए यहाँ हम brackets भूल गए
इसे डिलीट करें
देखते हैं क्या होता है program सेव करें
terminal पर वापस आ जाएँ
पहले की तरह compile और एक्जीक्यूट करें
हम एक error देखते हैं:
expected identifier before token
यह इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास दो भिन्न expression हैं
हमें and operator का उपयोग करके उनका मूल्यांकन एक expression के रूप में करना है
अब अपने program पर वापस जाएँ और error fix करें
यहाँ brackets प्रविष्ट करें
save click करें
terminal पर वापस आएँ
पहले की तरह compile और एक्जीक्यूट करें
अतः अब यह काम कर रहा है
अब इस tutorial को सारांशित करते हैं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
logical or
नियतकार्य
एक program लिखें जो यूजर से input के रूप में दो numbers ले
not operator का उपयोग करके जाँचें कि दो numbers बराबर हैं या नहीं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
यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद